यहाँ पर तो मुझे एक झरना है उसके नीचे में पानी है और ब्लैक कलर का रंग किया हुआ है।

एक लाल कलर का चेयर है बहुत तरह का बैलून टँगा हुआ है।

लाल कलर उसमें लिखा हुआ है और फिर बगल में एक गांच है उसके पीछे एक टावर -सा टावर है व्हाइट कलर का बगल में कोई साइकिल भी रखा हु --

यहाँ पर तो मुझे एक ब्रिच गाँच पेड़ दिख रहा है जो ये --

पीछे पोल दो पोल है और उसके एक आदमी पुलिस बैठा हुआ है दो--

यहाँ पर तो मुझे एक रूम दिख रहा है जिसमें कि बच्चे लोग एग्जाम दे रहे है और यहाँ पर लाल कलर का टी-शर्ट --